इस फोटो में दिखाया है कि--

इस फोटो में दिखाया है की--

उन्होंने सर के ऊपर सफेद रंग की टोपी पहनी हुई है।

और बच्चियों ने यहां पर सर के ऊपर चुन्नी पहनी हुई है।

तीन लेडीज नाच रही हैं यहां पर डांस करती दिखाई गई हैं।

यहां पर एक दुकान है जिसके ऊपर यहां--